ब्लैक कलर की टॉप पहनी हुई है। ब्-लंबे-लंबे बाल है। एयरिंगस पहन रखी है। डांस कर रही है।

और नीचे बलून्स फुग्गे गुब्बारे पड़े हुए --

बहोत बड़ा स्कूल है जिसका नाम है बीआरवी मॉडल स्कूल । उसमें ब्लैक कलर और व्हाइट कलर में खिड़कियां लगी हुई हैं। ब मेन गेट है ब्लैक कलर का।

दीवार दिख रही है खिडकियां दिख रही हैं लकड़ी दिख रही है डिब्बी दिख रही है लाल कलर का ढक्कन दिख रहा है व्हाइट कलर का ढक्कन दिख रहा है।

दवा पीने की शीशी दिख रही है घास दिख रहा है दीवार दिख रही है डिबरी दिख रही है लकड़ी दिख रही है पट्टी दिख रही है।

ब्लैक कलर के फाइल्स रखे बहुत सारे एक रेड कलर की फाइल्स रखी है बुक्स रखी हुई है चेयर टेबल रखी हुई है।